यहाँ पे कसरत करते हुए दिख रहे है यहाँ पे लड़की भी कसरत कर रहीं है।

नीले कलर का दिख रहा है यहाँ पे मकान भी दिख रहे है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे सुपरवाइजर भी दिखाई दे रहा है।

ब्लूटूथ भी डाले हुए है यहाँ पर लड़की भी दिखाई दे रही है पेड़ भी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर मछली बिक रही है यहाँ पर बरसाती भी हरी बिक रही है यहाँ पर लाल बरसाती भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर तखरिया भी लगी हुई है यहाँ --

यहाँ पर मछली बड़ी रखी हुई दिख रही है लाल कपड़ा भी रखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर लाल रंग भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर सफेद बॉटल भी रखी हुई हरे बॉटल भी है यहाँ पर सफेद बल्ब भी दिखाई दे रहा हैं।